और केला है संतरा है अनार है सेब है प्याज है मुर आलू है।

लस्सी हॉटेल है जिस लस्सी हॉटेल के बाहर कुछ लोग खडे हुए है।

आ और दो लड़के और लडकिया चेयर पे बैठे हुई है एक लडका खड़ा हुआ है।

जिस रात रस्ते मे एक तो रिक्शे खडे हुए है और एक एक आदमी खडा हुआ है।

एक बडासा बाउंड्री बाउंड्री ही है जिसकी अंदर एक मंदिर है।

एक गणतंत्र का द्वार है जिस गणतंत्र के द्वार मे एक झेंडा लेहराया जाता है।

ब्रेड चॉकलेट टोस्ट बिस्किट नमकीन आ और कुरकुरे चिप्स और कुछ सामने--

और और कुछ लडका इंच टेप लेके खडा हुआ है अगल बगल हरे पेड़ पौधे है बिल्डिंगे बनी है।

ये महासाजी निवास है और उसके बाहर गेट लगी हुई है।

और एक ऑटो रिक्शा बाहर खडी हुई है एक आदमी पकडा हुआ खडा है।

गॅरेज है जिस गॅरेज मे दो कारे रखि हुइ है एक कार खुला हुआ है ओर अगल बगल लोग खडे हुए है एक लड़का गा कार की कार को बना रहा है।

टेन्ट और बाहर कूछ लोग बाहर भी खड़ी हुए है कूछ दो आदमी औरत फोटो खींचा--

एक एक बड़ाशा रूम है जिस रूम मे बहुत सारे चेयर लगी हुई है।

दो अगल बगल मंदिरे है जो मंदिरो के निचे और बहुत सारे लोग खडे हुए है।

और दो तीन औरते और एक लड़का खड़ा हुआ है जो फोटो खींचा रहा है।

टेंट लगी हुई है टेंट में लाइटिंग की गई है हरे नीले और अ अ और फूलो से सजा है।